एक ठो ये पहाड़ के ऊपर गुम्फा जैसा है एक ठो जेंट्स वहां से निकल रहा है और ये बहोत--

खड़ा हुआ है झोपड़ी टाइप का और पेड़ सब पास पास में है चारों तरफ--

बहोत ही सुंदर पार्क है हरे हरे घास में बैठे हैं दो सर खड़े हैं।

ये एक बड़ा सा जंगल है जंगल में पहाड़ है पहाड़ से--

पहाड़ पे पूरा पेड़ ही पेड़ है बहोत सुंदर दिख रहा है बहोत ही--

पानी गिर रहा है ऊंचाई से बहोत अच्छा झरना से पानी गिर--

यहां एक शादी का डेगरेशन किए हैं हरे रंग का पर्दा लगा हुआ हैं बहोत सुंदर दिख रहा है डेगरेशन और--

बहुत सारा लगा हुआ है। व्हाइट कलर का कलर किए हैं। सामने एक ठो--

रेड कलर का बॉर्डर में दिए हैं और ये मां सम्मेसरी का मंदिर है।

गेट के ऊपर वहां येलो कलर किए हैं और एक ठो साइड में घर बना के र--

और चारों तरफ पार्क के चारों तरफ पेड़ ही पेड़ है बहोत सुंदर है।

पूरा बहुत अच्छा ग्रीन ग्रीन हरा हरा पूरा दिख रहा है बहुत ही प्यारा दिख रहा है बहुत क्यूट है बहुत सारा--